सामने एक जंगल दिखाई दे रहा--

एक मकान दिखाई दे रहा है।

है जिसका रंग लाल रंग का--

है उसके पीछे एक और आदमी--

है बी_एच_आई_एन_डी_ए --

सामने एक तालाब दिखाई--

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा--

आदमी और औरतें खड़ी--

और उसके गले में एक रस्सी पड़ी--

सोफे का रंग ब्लैक कलर --

है सामने एक खिड़की --